यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो अम्म वो चीज़ जिससे अम्म काम होता है।

ये अ दृश्य है के अ एक हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं।

उसका दृश्य है ये जहाँ पर महिला ही सिर्फ रह सकती हैं।

जो बड़े-बड़े रेस्ट्रो रेस्टोरेंट और वो बने हुए हैं उसमें से एक है ये --

वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं खअअ पूजा अर्चना कर रहे हैं।

तोोो जहाँ पर लोग केक वग केक पेस्ट्री ये सब जो मिलता है लेने के लिए आते हैं इसका नाम ओनडोन बेकरी है।

और बहुत सारे इनके चेंबर्स बने हुए हैं अलग-अलग एंप्लॉई का अलग-अलग चैम्बर है।

वहाँ का ये नज़ारा है दो गाड़ियाँ खड़ी अ दो मतलब टू --

इसका नाम हैं पाटलीपुत्रा पार्क और ये एक पार्क के बाहर का दृश्य है जो मैन --

इस दृश्य में हमें नज़र आ रहा है के जो अम्म रेड कलर का जो होता है पोस्ट पोस्ट बॉक्स होता है जो--

गेट पर लिखा हुआ हैं नो पार्किंग और प्रभात खबर लिखा हुआ है तो प्रभात खबर और एक गाड़ी खड़ी हुई हैं अंदर --

इस दृश्य में पीछे एक बड़ी सी मस्जिद का जो मीनारा होता है वो वैसा नज़र आ रहा है ये --

काला एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है और इस बिल्डिंग के पीछे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मस्जिद का मीनारा हो --

इस दृश्य में एक जो पअअअ पार्क होता है अ उस पार्क के अंदर --

जो वाटरअअ वाटरफॉल बना होता है वाटर जो फाउंटेन बना होता है जहाँ फाउंटेन लगा होता है पानी का फव्वारा --

वहाँ पर मशीनें एक्सरसाइज मशीन रखी हुईं हैं बहुत सारी और ये उसके अं उसके अंदर का है ये सीन --

जींस टी-शर्ट शर्ट और और भी बहुत सी चीजें रखी हुई हैं जिसमें फुटबॉल --

बच्चों का जो पार्क होता है उसकी उसका ये दृश्य है अ फिसल पट्टी बनी हुई है और बैठने की भी अ टेयर चेयर बनी हुई है।

इस दृश्य में हमें सड़क नज़र आ रही हे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

ये दृश्य हैं एक बड़ी सी दुकान हैं उसके अंदर बहुत अ सामान रखा हुआ हैं बहुत सा--

ये दृश्य हैं एक जिम का जहाँ पर लोग वर्जिश के लिए आते हैं।

इस तस्वीर में दिखाया हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिखा हुआ हैं श्री कृष्णापुरी डाग घर--

नीट नाम से हैं और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर--